सामने एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है। ग्राउंड के अंदर बहोत सारा लोग हैं।

उसके साइड पर एक लड़की खड़ी है उन्होने ब्लैक कलर की स्वेटर पहनी है हाथ पे उनके एक बैग भी है वो मरून कलर की है।

दोनों लड़की ने ऑरेंज कलर की हिजाब पहनी है।

सामने बहोत भीर दिख रहा है। सामने एक बूढ़ा आदमी ने कुरता पैजामा पहना है उसके पास वाले आदमी ने --

सामने एक बड़ा-सा पूल दिख रहा है पूल का वॉटर का कलर है ब्लू पीछे बहुत सारा पेड़ है।

एक पेड़ दिख रहा है सूखा हुआ।

सामने एक रस्ता दिख रहा है। रस्ता के उस पार कुछ घर दिख रहा है।

कलरिंग पर्दा भी है। रेड कलर की पर्दा है।

एक बड़ा सा चर्च नजर आ रहा है। चर्च के सामने स्नौमैंन का स्टेचू है। एनिमल्स का टेस--स्टेचू है।

पेड़ का कलर है ग्रीन ।

बहुत सारा मिट्टी का कप दिख रहा है बिस्किट दिख रहा है। एक बच्चा खड़ा है स्वेटर पहन के।

सामने एक बास खड़ा है। बास का कलर वाइट एंड ब्लू है। लग रहा है ये कोई बास स्टैंड है। पीछे बहोत सारा पेड़ है।

इसके सामने एक गेट भी है छोटा-सा। पीछे बहोत सारा पेड़ दिख रहा है जंगल टाइप का है पीछे।

कुछ औरत बच्चे और आदमी मिलके डांस कर रहे हैं। सामने बहोत भीर है।

तीन मिरर दिख रहा है दो फ़ैन भी दिख रहा है।

और उस पर ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है।

उसके पास एक बड़ा-सा बस खड़ा है बस का कलर है येल्लो --

एक बड़ा सा कार भी खड़ा है। कार का कलर है व्हाइट कार का खिड़की का कलर है ब्लैक ।

एक सामने साइकिल खड़ा है उसका टायर पर ऑरेंज कलर लगा हुआ है।